जहाँ पर बहोत सारी सीढ़िया है ऊपर जाने के लिए और सीढ़ियों से नीचे कुछ--

मेरे सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है मुझे कुछ समुद्र की पिक्चर दिखाई दे रही है जहाँ पर बीचो बिच पत्थर रखे गए है।

मेरे सामने जो पिक्चर है मुझे गणपती बप्पा का मंडप दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहोत बड़ी मूर्ति बैठी हुई है गणपती बप्पा की--

गणपती बप्पा का मुकुट गोल्डन कलर का है और उनकी धोती पिंक कलर की है और उन्मे एक हार भी पहना हुआ है बड़ा सा--

यहाँ पर बहुत सारे पेड - पौधे है।